तो जैसे कि मैं यहाँ देख पा रही हूं तो हर जगह बर्फ जमा हुई ही दिखाई दे रही है। बहोत सारे लोग बर्फ पे खेलते हुए दिख रहे हैं।

बड़े-बड़े फ्लैट्स दिखाई दे रहे हैं और कुछ पेड़ लगे हुए हैं। बच्चे बड़े सब बर्फ में खेल रहे हैं।

एक फ्रेम ऊपर लगा हुआ दिख रहा है। नीचे एक फैन रखा हुआ दिख रहा है।

गुप्ता जोकि एमबीबीएस लंदन से है।

ये एक वाटर पार्क है। वाटर पार्क में फिसल पट्टी लगी हुई है।

आसमान नीला नीला है। हर जगह हरियाली है।